जैसा कि हमें यहां पे देखने को मिल रहा है यहां पे एक रिक्शा है रिक्शे पे आप देख सकते है यात्री लिखा हुआ है।

और इनके रिक्शे के पास दो अंकल खड़े हैं जिनके चेहरे हम नहीं देख पा रहे हैं देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छी जगह है ये।

जयपुर बुकिंग लिखा हुआ है देख सकते हैं यहां पे और बड़ा सारा बना हुआ है ये यहां पे कुछ लड़कियां हमें दिखाई दे रही हैं।

जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं हमें यहां पे किला दिखाई दे रहा--

टिल्ले के यहां पे आप देखते हैं पीछे पहाड़ी इलाका है और यहां पे फोर व्हीलर पार्किंग की गई है देख सकते हैं।

पूरी बस खाली है यहां पे सीटे इसकी आप देख सकते है बड़ी बड़ी हैं और काफी प्यारी बस है सुंदर हैं।

स्लाइड्स बनी हुई है बच्ची यहां पे बैठे हैं देख सकते हैं बड़ा सारा पाइप यहां पे दिया गया है पानी देने के लिए--

जैसा की हम देख पा रहे है यहां पे काफी सारे बच्चे हमे दिखाई दे रहे है बेंच लग रही है और टेबल है।

यहां हम देख पा रहे है यहां पे एक मंदिर है। मंदिर आप देख सकते है। बड़ा ही प्यारा और सुंदर है।

जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं हमें यहां पर भैया दिखाई दे रहे हैं भैया का चेहरा हम नहीं देख पा रहे हैं भैया को देख सकते कितनी अच्छी फैसिलिटी दी गई है यहां पे --

जैसा की हम यहां पे देख पा रहे है यहां पे एक बहोत बड़ा मंदिर है मंदिर आप देख सकते हैं बहोत ही प्यारा और बहोत ही सुंदर बना है।

बसों के इधर आप देख सकते हैं भैया खड़े हैं और गेट इसका खुला है देख लीजिए यहां पे।

और आप यहां पे देख सकते हैं यहां से ये लोग कट्टे उठा रहे हैं और यहां ठेले पर रख रहे देख सकते हैं यहां पे।

घर के पास आप देख सकते हैं कि यहां पे बैंक भी खुला हुआ है देख सकते हैं और काफी अच्छी फैसिलिटी है यहां --

जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं हमें देख सकते हैं आप बहुत ही प्यारी बहुत ही फ्रेश है यहां पर मूली दिखाई दे रही है।

पुराने टाइप के कुछ न आलू दिखाई दे रहे है देख सकते है ये नये आलू है बट पुराने टाइप के दिखाई दे रहे है और यहां पे आप देख सकते है न ब्लैक-ब्लैक डॉट हो रहे --

किराने की शॉप पर आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान रखा गया है सामने कि ओर हमें देखने को मिल रहा है यहां जो अंकल खड़े हैं।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

पात्र लिखा हुआ है देख सकते हैं यहां आंटी और अंकल खड़े हैं जो मंदिर के सामने की ओर बैठे हैं घड़ी सामने लगी हुई है।

यहां हम देख पा रहे हैं यहां पे सैनी नाम से फ्रूट एंड वेजिटेबल का फ्लेक्स लगा हुआ है उसके नीचे हम देख पा रहे हैं यहां पे सब्जियां और फ्रूट्स रखे हुए हैं।

जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे है यहां पे एक मंदिर है मंदिर काफी बड़ा सारा है देख सकते है यहां पे --

देख सकते हैं काफी स्पीड से पानी बह रहा है और ऊपर पुलिया बनी हुई है पुलिया के उस साइड आप देख सकते हैं पीछे की और कुछ पेड़ पौधे हम देख पा रहे हैं।

हाल में आप देख सकते तीन भैया खड़े है तीनों भैया का चेहरा छुपाया गया है एक भैया यहां पर सेल्फी ले रहे हैं देख सकते हैं पीछे की ओर और भी कुछ सामान हमें यहां पर दिखाई दे रहा है।

खेत में आप देख सकते हैं बहुत सारी हरियाली है छोटे-छोटे फूल आए हुए हैं कुछ अंकल आंटी हैं जो आपस में मिल के यहां पे देख सकते हैं अपना-अपना काम कर रहे हैं।

यहां हम देख सकते हैं यहां पे एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट के बाहर आप देख सकते सीटिंग एरिया कितना शानदार बनाया गया है।